सनसेट बहुत ही सुंदर दिख रहा है और उसके आसपास--

आदमी को सम्मानित किया जा रहा है।

और माला भी पहनाया जा है।

सोच रहा है चढ़ूं या ना चंढू और एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी डेयरी के बाहर की फोटो है जिस--